वहां पर अंदर बहोत सारे खांचे बने हैं जिसमें बहोत सारे दफ्ती के डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल है वहां की जमीन टाइल्स की है।

और उसके ऊपर बहोत सारी मछलियों का भंडार लगा हुआ है।

बाहर बोहोत सारे लोहे के गेट रखे हुए हैं जो कि कोई लाल रंग के हैं तो कोई ग्रे रंग के हैं।

वहां पर खूब सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हैं। वहां पे दो खटिया भी बिछी हुई है।

वहां पर बहोत सारे बर्तन भी रखे हुए हैं अंदर और एक डस्टबिन जो की हरे रंग का है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पर दीवाल पत्थर जैसी बनी हुई है लाल रंग की।

वहां बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं और बहुत सारी लाइ--

इनके आस पास बोहोत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक कंप्यूटर कोचिंग है जिसपे बोर्ड लगा हुआ है लिखा हुआ है जी_के कंप्यूटर ।

यह एक रेस्टोरेंट है जो कि सफेद रंग का है जिसकी जमीन भूरे रंग की है।

यह एक बिल्डिंग है जो की सफेद और नीले रंग की है वहां पर एक काले रंग का बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है।

यह एक गार्डन है जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी घास उगी हुई है।

और एक औरत है जिसेने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है वहां दूल्हा दुल्हन भी खड़े हुए हैं।

यह एक सफेद रंग का विद्यालय है वहां पर गेट और खिड़की हरे रंग की है।

और वहां पर एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा है सफेद रंग से उच्च प्राथमिक विद्यालय सरायपुरा कक्षा एक से आठ।

जिस पे बहुत सारी लाइट जल रही है आसपास दीवार है जो की सफेद रंग की है।

और वहां पर बहोत सारी खिड़कियां लगी है जो की काले और नीले रंग की है।

और वहां एक बैनर भी लगा हुआ है जो की सफेद रंग का है।

जिनके ऊपर लिखा हुआ है लेंनफोर कैश कार्ड फास्टैग ।

यहां पर बहुत सारे लोहे के गेट रखे हुए हैं जिनपे बहुत सारे डिजाइनें बनी हुई हैं।

यहां पर सफेद रंग की दीवाल है सफेद रंग छत हैं और निचे सफेद रंग की टाइल्स लगे हैं।

सामने एक गमला रखा है और पास में एक ए_टी_एम मशीन है जो कि सफेद और भूरे रंग की है।

और वहां पर एक पंडित जी हैं जो की धोती और ऊपर अंगोछा डाले हुए हैं।

वहां पर बहुत सारे शटर लगे हुए हैं जो आधे खुले हुए हैं।

दो आदमी है जिन्होंने सफेद शर्ट पहनी है दो आदमी है जिन्होंने नीली शर्ट पहनी है।

वहां पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और पानी की बोतल भी रखी है।

यह एक रोड है जहां पे बहोत सारे लोग हैं बहोत सारी स्कूटी आ रही है।

जो की भूरे रंग की है वहां एक स्कूटी भी खड़ी है अंदर।

और लाइट भी जल रही है वहां पर एक शीशा भी लगा हुआ है।

वहां पर कांच का गेट लगा है और वहां पर एक लड़का खड़ा है जो कि उसकी फोटो खींच रहा है।

वहां पर सब लोगों ने काले और नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

इसमें बोहोत सारी घास उगी हुई है बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए ऐं ।